पत्थर नजर आ रहे हैं इस फोटो पे मुझे--

इस फोटो पे मुझे बस नजर आ रहा है।

इस फोटो में मुझे पौधे नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में मुझे दुकान नज़र आ रही--

पैंक नजर आ रही है। इस फोटो --

इस फोटो में मुझे कार्टून नजर आ रहा है

इस फोटो में मुझे अंग्रेजी शराब की दुकान नजर आ र--

इस फोटो में मुझे लकड़ी नजर आ रही है।

इस फोटो में मुझे घर नजर आ रही है।

इस फोटो में मुझे मैरिज हॉल --

इस फोटो में मुझे सी_सी_टी_वी कैमरा नजर आ--

इस फोटो में मुझे लैपटॉप नजर आ रहा है।

इस फोटो में मुझे गार्डन नजर आ रहा है --

इस फोटो में मुझे सोनी सैमसंग की--

फोटो में मुझे मोबाइल की दुकान नजर आ र--